कई सारे इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई दे रहे हैं और एक शॉप भी दिखाई दे रहा है।

ढेर सारी कुर्सियां भी है और टेबल भी है।

बहुत सारे बेम्बू भी है।

नीचे कारपेट बिछाया हुआ है।

टेबल भी रखा हुआ है पर्दा भी है।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

मुझे इस तस्वीर में एक पार्लर दिखाई दे रहा है एक वास भी है।

बहुत सारे पानी की बोतल भी है।

शॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

ये सारे लोग भी हैं दरवाजा भी है।

बहुत सारे बिल्डिंग्स भी हैं।

ऊपर कई सारे लाइट्स लगाए हुए हैं कई सारे फैंस भी है।